सरस्वती माता का एक तस्वीर दिख रहा है।

जिरो वन थ्री फोर वाइट कलर का ट्रैफिक पुलिस का एक पुलिस वैन है ये ।

पे इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन का एक फलक दिख रहा है।

टी-शर्ट एंड नील जींस पहना हुआ--

अवस्थित यहां पे एक कमर्शियल नर्सरी दरबार खान के ।